इसमें तीन मूर्तियां बनाई गई है जो कि एक ऊपर में है और दो अगल बगल मूर्तियां है जिनकी सजावटे बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है।

ये एक झरना का दृश्य है जो कि पहाड़ो से हो कर स्वच्छ जल--

बताता है इसे यह एक पर्यटन स्थल हैं जो की बहुत दूर से लोग यहाँ पर --

जोकि सुबह- शाम अज़ान के वक्त--